और इस सीढ़ियों के लेफ्ट साइड में भी पेड़ है और इस सीढ़ियों में चढ़ना स्टार्ट करते है तो राइट साइड --

इस स्पर्धा सचिव को देखकर लग रहा है कि यह एक प्लेटफार्म है इसमें भी देख सकते हैं पीछे बहुत सारे ब्रेकर पड़े हैं।

और कुछ अपना वो अलग रही है एक बच्चे के पीछे पोटिया बैग पड़ा होगा एक बच्चे के नीले कलर की ड्रेस पहन रखी है।

इस पिक्चर में देख पा रहे हैं ये एक क्लॉक शॉप है इसमें की देख सकते हैं बैक साइड में कुछ आदमियों के लिए समान होगा।

मतलब ये टेक्स्ट बुक हैं और ये कस्टमर है जो यहां आके खड़ा हुआ है और एक जो --

जो की बड़े बड़े पोस्टर प्रिंट करते होते जहां पे हम देख पा रहे हैं इतनी बड़ी प्रिंटिंग की मशीन है।

सामने देख सकते हैं क्या कूलर दिखाई दे रहा है क्या कलची है बाकी सामने खड़े हैं और टाइलों का कलर व्हाइट है।

इस पिक्चर में हम देख पा रहे हैं कि एक शॉप की फोटो है जिस पर लिखा और यहां पे है।

डिजाइन है और बहोत ही ऐसे ही कैजुअल और बढ़िया सा दिखाई दे रा है प्रोफेशनल और दीवार पे आप देख सकते है कि बहोत सारे फूलो की डिजाइन बनी हुई है।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

इस पिक्चर को देख के हमें लग रहा है कि ये किसी सभा का चित्र है जिसमे की पा रहे हैं बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं।